और कई सारे घर दिखाई मिल रहा है।

यहां मुझे ढेर सारे मनुष्य दिखाई दे रहा है।

और एक सोफा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर लिखे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां ढेर सारे पत्थर दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे पानी दिखाई दे रहा है।

यहां ढेर सारे दुकानें दिखाई दे रहा है।

यहां एक व्यक्ति दुकान के बाहर टूल ले के बैठा हुआ है।

यहां एक टेबल फैन दिखाई दे रहा है।

यहां ढ़ेर सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां ढेर सारे बैग में दिखाई दे रहा है।

यहां ढेर सारे वाइन के बोतल दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे पानी भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे टीना भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कारपेट भी दिखाई दे रहा है।

यह यामाहा के शोरूम है।

यहां मुझे एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

यहां घर भी दिखाई दे रहा है।

रिक्शा के सामने एक व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहा है।

यहां ढेर सारे केक हैं।

ये केक के रंग ब्राउन है।

यहां मुझे ढेर सारे विद्यापक भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे घर दिखाई दे रहा है।